काफी सारे लंबे-लंबे बड़े-बड़े दाढ़ी वगैरा रखा हुआ है।

देख सकते है इसका घर बहुत ही जबरदस्त लुक दिखाई रहा है और इसमें बहुत सारे यहाँ पे मोटर साइकिल --

हेल्लो गाइस देख सकते है यहाँ पे काफी सारा बुक वगैरा रखा हुआ ट्रांसलेशन वगैरा देख सकते है और काफी ही यहाँ पे--

हेलो गाइस देख सकते है यहाँ पर काफी सारा ताज़ा-ताज़ा मछली खेत से पकड़ के लाया हुआ है।

हेलो गाइस देख सकते है होटल का है और काफी म हम्म लड्डू मिस्टी वगैरा रखा हुआ है देख सकते है।